टमाटर गाजर वैगरह रखी हुई हैं।

ये शांति नगर के एक डेयरी फॉर्म की दुकान है जहाँ पे --

ये एक जिम की तस्वीर है यहाँ पे एक आदमी को --

जिम करते हुए दिखाया गया है ये आदमी बीम मार रहे है और यहाँ पे फीस्ट बैग और --

ये हिन्दू धर्म के मंदिर की --

और अनेक प्रकार की क्रीम वगेरा च्यवनप्राश होर्लिक्स --